एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है।

और हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और काफी सारा पानी दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़ी दुकान दिखाई दे रही है।

कुछ पंखे दिखाई दे रहे हैं और बोर्ड दिखाई दे रहा है।

दो कार दिखाई दे रही है।

यह एक लकड़ी का फ्रेम दिखाई दे रहा है।

और इसमें तीन सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं सुंदर बॉक्स दिखाई दे रहा है।

और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसके हाथ में एक मोबाइल है।

कुछ ईंटे दिखाई दे रही है।

और एक टीचर दिखाई दे रही है।

बहुत सारे वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं।

कुछ खंभे दिखाई दे रहे हैं कुछ घास दिखाई दे रहा है।

और इसमें गन्ना खड़ा दिखाई दे रहा है।

यह एक सुंदर दुकान है इसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।